ये एक फिश टैंक हैं यहां पे बहोत सारे फिश टैंक है जिसमें अलग अलग कलर्स की मछलियां--

यहां पे एक ऑफिस या बैंक का फोटो है।

ये बस स्टैंड की पिक्चर है जहां पे बस स्टैंड है और यहां पे बोहोत सारी बसे खड़ी हुई है प्लस --

वगैरह है साइड में प्लस एक हॉल वगैरह टाइप में उधर बनाया गया रोड है बहोत चौड़ा जिसमें डस्टबिन है व्हीलचेयर है और कुछ आदमी है जो बैठे हुए हैं।

और उसके ऊपर वो पक्षी बैठा हुवा बगल में साइन है सर्व के सहयोग से विश्व में शांति--

ये बहोत सारे घरों की फोटोज वगैरा जो उपर से भी छत से ली हुई है यहाँ पे बहोत सारी लंबी लंबी बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी प्लस पेड़ पौधे नीचे थोड़ा सा पानी लग रहा मतलब--

रा भरा हुआ पेड़ है यहां पे टावर्स वगैरह हैं अलग अलग कलर्स के घर हैं छत है उन--

रहा है जिसमें बहोत सारे फल वगेरा रखे हुए है बस --

एक टेंट लगा हुआ है उसके नीचे लास्ट में उधर एक बड़ी सी बिल्डिंग है इसमें बहुत सारी दरवाज़ें खिड़कियाँ है साइड में पेड़ है अगल बगल में बहोत सारे पेड़- पौधे है यहाँ पे।

दोनों साइड में एक चैन से जो फोन में बात कर और उस साइड में--

तिरंगा झंडा लगाया हुआ प्लस मोती वोती पहना हुआ है और एक है जो उसने चुनरी लगाकर तिरंगा झंडा फहरा हुआ और शाय सरस्वती माता जो चेयर पे बैठी हुई वीणा लेके --

ये खाने की प्लेट की पिक्चर हें जो प्लेट है वो ब्लैक कलर का वो एक मैट पे रखा हुआ है।